इसमें की सामने दुल्हा और दुल्हन बैठी हुई है।

यह एक घर का फोटो है जिसमें ऊपर की तरफ पंख लगा हुआ है।

इसमें कि कुछ बच्चे और कुछ आदमी बाहर निकल रहे हैं।

साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें डेंजर लिखा है।

इसमें पानी की बोतल भी बी दिख रही है।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और साइड में एक घर बना हुआ है।

सामने की तरफ पेड़ लगे हैं नीचे डस्टबिन रखे हैं साइड में गमले भी रखे हैं।